और बाहर में बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

एक औरत जो खड़ी है लाल कलर की साड़ी पानी हुई है नदी की ओर देख रही है।

यह एक स्थान का दृश्य है।

ये अगल बगल बहुत सारे लोग आये हुए है।

सारे पंखे लगाए गए हैं।

पानी भी बह रही है। लोग आनंद भी ले रहे हैं।

बगल में एक आदमी पेंट पहन रहा है।

यहां पर बहुत सारे खिलौने रखे गए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य हैयहां पर बहुत तरह के सामान रखे गए है।

और इस घर को कोरगेट से बनाया गया है और लाइट भी लगाया--

इसमे से कुछ मेमोरी कार्ड भी रखा गया है एक मेमोरी कार्ड जिस्मे लिखा हुआ है सैंडिस्क ।

और भी बहुत सारे चीज दिख रहे है नीचे में बहुत सारे बांस फैले हुए हैं।

इसके बाहर मे चार गाड़िया लगी हुई है।

और एक आदमी खड़ा हुआ है ब्लू बार रेस्टोरेंट के बगल--

यह एक स्थान का दृश्य है जहां बहुत पानी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक आदमी बगल में खड़ा है जो कि टी शर्ट पहन रहा है।

एक अलग प्रकार का सब्जी--

यहां पर दो पटरिया दिखाई पड़ रही है।

एक समान के ऊपर गुलदस्ता है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

इसका कलर व्हाइट नजर आ रहा है एक घर के ऊपर ब्लू कलर का--

बहुत सारे गुब्बारे हैं इसका कलर येलो और ब्लू कलर में हैं।

और बहुत तरह की लाइटे भी लगाई गई है।

इसके चारों और बहुत सारे पेड़ दिखाई पड़ रहें हरे भरे।

इसके अगल बगल बहुत सारे खंभे लिखाई पड़ रहे हैं।

और उसके ऊपर एक घंटा लगा हुआ है।